यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से बाइक रिपेयर की जाती है यह दुकान बहुत ही पूरानी और बहुत ही भरोसेमंद दुकान है दूकान बहुत ही फेमस दुखानों में एक दुकान है।

यह खेत काफ़ी बड़ा और काफ़ी सुंदर खेत है।

यह कॉलेज काफ़ी पुराना और काफी अच्छा कॉलेज है।

और एक नीचें के फ्लोर में मयूर स्टेशनरी की दुकान है जो यह स्टेशनरी की दुकान में बहुत सारी चीजें मिलती है यह दूकान बहुत ही पूरानी और बहुत ही फेमस दुकानों में से एक है।

इस जगह का नाम द इंप्रेस पॅलेस है।